यहाँ पर एक बड़ी सी बिलडिंग दिखाई दे रही है बड़ी सी बिलडिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ की दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है पत्थरों की दीवार दिखाई दे रही है जो की काफी बड़ी दिखाई दे रही है।

एक कटोरी रखी हुई दिखाई दे रही है जिसमें लाल रंग की चटनी दिखाई दे रही है प्लेट काले कलर की है और यहाँ पे सफ़ेद चटनी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक छत दिखाई दे रही है छत पर मजदूर दिखाई दे रहा है मजदूर चार पांच दिखाई दे रहे है ।

और यहाँ पर कुर्सियां दिखाई दे रही है जिसपे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है सामने बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में मिट्टी दिखाई दे रही है घास उगी हुई दिखाई दे रही है ।

इस पर पटना बुक्स वार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ दिखाई दे रहा है।